और यहाँ पर लाइटें लगी हुई है गिटार रखे हुए है और काफी सारा सामान है ढोलक जैसे तबला जैसे सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है।